बहुत सारे खिड़की में किताबें नजर आ रही है और एक--

यहां पर एक छोटा सा तलब दिखाई दे रहा है और आम का पेड़ भी दिखाई--